और हरे- भरे रंग से भरा हुआ है एक घास है ऊपर आसमान है बड़े- बड़े--

एक फंक्शन सजाया गया हुआ है वाइट कलर से इसमें सजाया गया हुआ हैं नीचे लाल कलर की मेट हैं पीला कलर का कलर हैं येलो लाइट्स कोई भी नहीं है बहुत भारी डेकोरेशन --

पत्थर है पत्थर की डिजाईन बनाए हुए है और पत्थर के डिजाईन में शेर है नीचे हाथी है और ऊपर कुछ तरह तरह के डिजाईन और बाजु पेड़ और उसके ऊपर दुम है उसके ऊपर गोल्डन कलर का सोने का कुछ चीज़ है।